शादी व्याह मैं टी_वी के व्यवस्था बाटे सब सुन्दर दिखत बाटे बहुत बढ़िया बा हो।

देख लोगन सब जनता ख़रीदत बा भैया सभी लोग बा पुलिस वाले भी बानन ठीक बा।

काम काज का सामान बाते यहाँ सब लाइन के आसे पास बा --